लिबर ऑफिस कैल्क में डेटा के साथ कार्य पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
फिल टूल्स और सिलेक्शन लिस्ट का उपयोग करके गति बढ़ाना
शीट्स में कन्टेंट बाँटना
डेटा हटाना डेटा को बदलना डेटा का भाग बदलना
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटु लिनक्स वर्जन 1004 और लिबरऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
स्प्रैडशीट में डेटा एंटर करना श्रम गहन हो सकता है लेकिन इसको आसान बनाने के लिए कैल्क विविध टूल्स प्रदान करता है
सबसे बुनियादी क्षमता है कि माउस के साथ एक से दूसरे सेल में कन्टेंट्स को ड्रॉप और ड्रैग करना
लेकिन कैल्क स्वचालित इनपुट के लिए विविध अन्य टूल्स भी सम्मिलित करता है विशेषतः दोहराई गई चीजों के लिए
यह फिल टूल सिलेक्शन लिस्ट्स नामक टूल्स हैं
ये एक ही डॉक्युमेंट की मल्टिपल शीट्स में जानकारी इनपुट कर सकते हैं
हम उन प्रत्येक के बारे में एक एक करके सीखेंगे
चलिए अपनी personal finance trackerओडीएस फाइल ओपन करते हैं
फिल टूल फिल टूल शीट में कन्टेंट की अनुलिपि के लिए एक उपयोगी पद्धति है
हमारी personal finance trackerओडीएस फाइल में मानिए कि हम कॉस्ट हैडिंग के तहत डेटा को निकटवर्ती सेल्स में कॉपी करना चाहते हैं
तो पहले सेल पर क्लिक करके पूर्ण डेटा चुनें जिसे कॉपी करने की आवश्यकता है जिसमें एंट्री 6000 है
अब बायें माउस बटन को पकड़कर रखें सेल के अंत तक माउस को ड्रैग करें जिसमें लागत एंट्री 2000 है
और वह सेल्स भी चुनें जहाँ हम डेटा कॉपी करना चाहते हैं
अब बायें माउस बटन को छोड़ दें
मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर फिल ऑप्शन पर क्लिक करें
पॉप अप मेन्यू में राइट ऑप्शन पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि हैडिंग कॉस्ट के नीचे डेटा निकटवर्ती सेल्स में कॉपी हो गया है
बदलावों को अंडू करें
फिल टूल का अधिक जटिल उपयोग यह है कि शीट्स में डेटा की कुछ श्रृंखला फिल करने के लिए इसका उपयोग करना
कैल्क सप्ताह के पूर्ण और संक्षिप्त दिनों और साल के महीनों के लिए डिफॉल्ट रूप से सूची प्रदान करता है
यह उपयोगकर्ता को उसकी स्वयं की सूची बनाने के लिए भी सक्षम बनाता है
अब अपनी शीट में डेज नामक एक नई हैडिंग प्रविष्ट करते हैं
इसके नीचे हम स्वतः सप्ताह के सातों दिन प्रदर्शित करेंगे
डेज हैडिंग के नीचे पहले सात सेल्स चुनें
अब मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिल ऑप्शन पर जाएँ
मेन्यू में सीरीज ऑप्शन पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि फिल सीरीज हैडिंग के साथ एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है
अब सीरीज टाइप हैडिंग के नीचे ऑटोफिल ऑप्शन पर क्लिक करें
स्टार्ट वैल्यू फील्ड में हम सप्ताह का पहला दिन टाइप करते हैं जो सुंदय है
बढ़त 1 के रूप में पहले ही सेट है
अब ओक बटन पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि दिन अपने आप ही सेल्स में एंटर होते हैं
आप उसी पद्धति से केवल सप्ताह के दिन महीना या साल एंटर कर सकते हैं जैसे कि वे कैल्क में पूर्व परिभाषित हैं
अनुक्रमिक डेटा के ऑटो फिलिंग के लिए अन्य पद्धति निम्न प्रकार है
सेल में सुंदय टाइप करें और एंटर प्रेस करें
यह कॉलम में अगली सेल पर फोकस करेगा
उस सेल पर वापस जाएँ जहाँ सुंदय टाइप किया था
अब आप सेल के तल में दायें कोने पर एक छोटा काला बॉक्स देखेंगे
इस बॉक्स पर माउस से क्लिक करें
इसे नीचे की ओर तब तक ड्रैग करें जब तक आप दाईं ओर पर प्रदर्शित बॉक्स में सतुर्दय न देखें
माउस बटन छोड़ दें
स्वतः ही सप्ताह के दिनों से सेल्स फिल हो गए हैं
यह तरकीब सभी डेटा के लिए कार्य करती है जो अनुक्रमिक हैंबदलावों को अंडू करें
आप स्टार्ट एन्ड और बृद्धि वेल्यू एंटर करके नम्बर्स के लिए वन टाइम फिल सीरिज भी बना सकते हैं
इसे प्रदर्शित करने के लिए पहले हम सेल्स में आ1 से आ7 तक पहले से एंटर किए गए सीरियल नम्बर्स को डिलीट करेंगे
नम्बर्स को डिलीट करने के बाद सेल्स आ2 टो आ7 को फिर चुनें
अब मेन्यू बार में एडिट पर क्लिक करें और फिर फिल और सीरीज ऑप्शन पर क्लिक करें
हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है
अब सीरीज टाइप हैडिंग के नीचे लिनियर ऑप्शन पर क्लिक करें
यदि यह डिफॉल्ट रूप से चयनित नहीं है
स्टार्ट वैल्यू फील्ड में हम पहला सीरियल नम्बर टाइप करेंगे जो कि 1 है
इंड वैल्यू फील्ड में हम आखिरी वेल्यू टाइप करेंगे जो कि 6 होगा
अब हम इंक्रीमेंट वेल्यू 1सेट करते हैं और अंत में ओक बटन पर क्लिक करते हैं
हम देखेंगे कि अनुक्रमिक सीरियल नम्बर्स के साथ सेल्स स्वतः फिल हो गई हैं
इन सभी केसेस में फिल टूल सेल्स के मध्य केवल क्षणिक संपर्क बनाता है
एक बार वे फिल हो जाती हैं तो सेल्स का एक दूसरे से आगे कोई संपर्क नहीं होता
फिल टूल्स के अलावा यहाँ गति वृद्धि के लिए एक सिलेक्शन लिस्ट्स नामक अन्य टूल है
जो कि केवल टेक्स्ट के उपयोग के लिए सीमित है
हम इसकी चर्चा इस क्रम के बाद के टूयटोरियल्स में करेंगे
फिल टूल्स और सिलेक्शन लिस्ट्स के बारे में सीखने के बाद अब हम सीखेंगे कि शीट्स के बीच कन्टेंट कैसे बांटें
कैल्क उपयोगकर्ता को मल्टिपल शीट्स पर समान सेल में समान जानकारी एंटर करने के लिए सक्षम बनाता है
अर्थात प्रत्येक शीट में व्यक्तिगत रूप से समान सूची एंटर करने के बजाय आप इसे सभी शीट्स में एक ही समय एंटर कर सकते हैं
अपनी personal finance trackerओडीएस फाइल में हमारा संपूर्ण डेटा शीट 1 पर है
अब हमें शीट 1 में समान डेटा दिखाने के लिए शीट 2 साथ ही साथ शीट 3 चाहिए
अतः हम मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और फिर शीट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं
अब सिलेक्ट पर क्लिक करें
अब दिखाई देने वाले डायलॉग बॉक्स में shift की का उपयोग करके हम शीट 1 शीट 2 और शीट 3 ऑप्शन्स को चुनते हैं
और फिर ओक बटन पर क्लिक करें
यह हमें वापस शीट 1 पर लाता है
अब शीट 1 में कुछ डेटा एंटर करते हैं
उदाहरणस्वरूप फ़12 सेल में हम थिस विल बीई डिस्प्लेयड ओन मल्टीपल शीट्स टाइप करेंगे
अब एक के बाद एक शीट 2 और शीट 3 टैब पर क्लिक करें
हम देखेंगे कि इन प्रत्येक शीट्स में सेल फ़12 समान डेटा सम्मिलित करती है
बदलावों को अंडू करें
आगे हम विभिन्न तरीकों के बारे में सीखेंगे जिनमें हम सेल्स में डेटा डिलीट और एडिट कर सकते हैं
सेल के किसी भी फॉर्मेट को हटाए बिना डेटा को डिलीट करने के लिए केवल सेल को चुनें
आप देखेंगे कि सेल का डेटा इनपुट लाइन फील्ड में दिखाई देता है
अब कीबोर्ड पर Backspace बटन प्रेस करें
आप देखेंगे कि डेटा डिलीट हो गया है
बदलावों को अंडू करें
सेल में डेटा बदलने के लिए साधारणतः सेल को चुनें और पुराने डेटा के ऊपर टाइप करें
नया डेटा मूल फॉर्मेटिंग को बनाए रखता है
बदलावों को अंडू करें
सेल में पूर्ण कन्टेंट को हटाए बिना डेटा का भाग बदलने के लिए केवल सेल पर डबल क्लिक करें
अब कर्सर की मदद से आप अपनी आवश्यकतानुसार सेल को एडिट कर सकते हैं
बदलावों को अंडू करें
अब हम लिबर ऑफिस कैल्क पर स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
संक्षेप में हमने निम्न बारे में सीखा फिल टूल्स और सिलेक्सन लिस्ट्स का उपयोग करके गति बढ़ना
शीट्स में कन्टेंट बाँटना
डेटा हटाना डेटा को बदलना डेटा का भाग बदलना
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contactspoken हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर संपर्क करें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें
spoken हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है
आईआईटीबॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद